बाइक भी खड़ा है जो लाल कलर का है।

कुर्सियों में प्लाई वुड भी बिछाया है।

यह एक किसी कोठास कॉफ़ी शॉप है।

यह एक कार रिपेयर सेंटर का फोटो है।

इनमें से यहां पर एक बाइक खड़ी है जो काले कलर की है और बुलेट है।

अंदर में शीशे का बहुत बड़ा गेट भी लगाया है।

ऊपर में कुछ कपड़े भी टांगे गए हैं कतार से।

लोहे से बैरिकेडिंग की गई है।

इसमें तीन चार व्यक्ति खड़ा हैं।

नदी में पानी की ओर पिलरे गाड़ी गई है और जाल लगाया गया है।

यह एक ऑटो के ऊपर तिरपाल टांगा है रखा है।

अंदर में टेबल कुर्सियां भी हैं।

इसमें सफेद और काले कलर के कपड़े टांगे लगाए गए हैं।

में से बगल में टेबल कुर्सियां रखी गई है।

उसके बगल में एक कढाई भी है बहुत बड़ा।

लोहे की बहोत बड़ी बड़ी ऊंची--

खंबे गाडकर लाइटें जलाई गई है।